मुझे यहाँ पर एक सोने की मूर्ति बनी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दिखाई दे रहे--